बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है और हॉल में बहुत सारी बेचें लगी दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहा है एक लड़का बहुत बड़ा बैग टांगे दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

कटिंग की दुकान दिखाई दे रही है जिस पर हमें अन्दर एक कुर्सी रखी हुई कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी बीच में हो रही है वो --

आदमी खड़ा हुआ है जो ब्लू कलर ब्लू कलर का पैंट और ले रेड कलर की शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है दुकान में ए.सी. भी दिखाई दे रही है और बहुत सारे तस्वीरें भी दिखाई दे रही है।

चद्दर सेट हाल दिखाई दे रहा है जिसमें नीले कलर की चद्दर चढ़ी हुई है उसकी दीवारें भी नीले कलर में दिखाई दे रही है जिस पर एक दीवार घड़ी टंगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही --